आरती बुक सेंटर लोहे के टीन में लिखा हुआ है।

मेला लगा हुआ है बाल्टी है बक्से है बिजली का लाइट लगे हुए है।

दो ब्रीज़ है वहा झाड़ लगे हुए है बिजली के तार है नीचे मे पिल्लर खड़े हुए है।

आ रोम आ द कैफै नाका का बोर्ड लगा हुआ है वहा पे लाइटिंग लगी हुई है नीचे व्हाइट ग्लास फ्रेम लगी हुई है।